यह एक लाइब्रेरी है और इसका नाम है पवन अम्बेसेन्ट लाइब्रेरी और यहाँ पे गमले में फूल लगे हुए है सुन्दर -सुन्दर--

मिठाइयों के हैं और फ़ास्ट फ़ूड की है और कुछ बगल में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और यहाँ पे लोग हमेशा रहते हैं।

यह एक मैरिज हॉल है जहां पे शादियां होती हैं।